वहां बीच में ही एक खंभा भी लगा है जो कि इलेक्ट्रिक का लग रहा है।

यह किसी गैरेज का दृश्य लग रहा--